यहा पर एक न्यू ताज हैयर सलून की शॉप है एक उपर मे न्यू ताज हैयर सलून का बोर्ड लगा हुआ है बाहर मे कुछ चैर रखी हुई है।

एक लड़की वहा पर बैठी है और एक लडका खड़ा है बाहर मे कुछ बकेट रखे हुए है। एक बेसिंग जैसा दिखाई दे रहा है।

एक पार्क दिखाई दे रहा है एक लाल कलर की घसरपट्टी दिखाई दे रही है बहोत से बच्चे खेल रहे है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

ये एक स्कूल की रूम है सब बच्चे अप आपने ड्रॉइंग बना रही है।

बाजू में एक घर दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है आसमान दिखाई दे रहा है कुछ पाइप रखे हुए है।

सामने में एक ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है जिसपे नीले कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है फेडरल बँक --

एक इंसान है जो की पैसे गिन रहा है यहा अलग अलग तरह के ड्राय फ्रुट रखे हुए है एक पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग को बहुत सारी खिड़किया है बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोग खड़े है कोई पुलीस भी दिखाई दे रही है।

सामने में कुछ छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे है बहुत सारे झंडे लगे हुए है।

एक इंसान के दो पाव दिखाई दे रहे है जिसको बैंडज किया गया है जो इंसान सॉक्स पहने हुए है एक पडदा दिखाई दे रहा है एक वॉच दिखाई दे रही है एक बैग रखी हुई है।